एक बोर्ड दिखाई दे रहा है आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ पोस्टर लगे हुए हैं दो फैन लगे हुए हैं।

बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं।

बिजली के कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं।

एक लोहे का जीना दिखाई दे रहा है। पीछे ईंटें दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं दो सोफे दिखाई दे रहे हैं।

टेबल पर दो प्लेट रखी हुई है बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है।

दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे है। एक कार दिखाई दे रही है। एक बाइक दिखाई दे रही पीछे कुछ खंबे दिखाई दे रहें।

जिस पर कुछ लिखा हुआ है सामान छपा हुआ है।

एक स्टॉल दिखाई दे रहा है। एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

मेज के ऊपर एक कांच का बड़ा शीशा दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी कुर्सियाँ दिखाई दे रहे है बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है।

यहां पर मुझे एक दूल्हा दिखाई दे रहा है।

सामने एक कुर्सी दिखाई दे रही है एक घड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहुत बड़ा एक होटल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं और घर दिखाई दे रहे हैं।

एक टीचर दिखाई दे रहे हैं नीचे कुछ मैट बिछी हुई है।

गोबी टीमाटर मिर्च दिखाई दे रही है।

पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी कारें दिखाई दे रही है।

कार के ऊपर एक नीली बत्ती दिखाई दे रही है सामने एक दीवार पर पोस्टर दिखाई दे रहा है।

कुछ अलमारियां दिखाई दे रही हैं सामने ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और सभी ऊपर झूमर लगे हुए हैं नीचे मैट बिछी हुई है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।